बराबर में दो तीन चेयर धरी हुई है।

जो टीन से बनी है।

यहां पे एक रूम है।

यहां पे दो औरत जा रही है।

ये यहां पे एक रेलवे ट्रैक है।

ये यहां पे शादी के लिए एक गेट डेकोरेट किया गया है।

ये यहां पे एक बुक स्टोर है।

ये कुछ छोटी कुर्सियां है।

यहां पे एक चर्च है।